एक पेट्रोल पम्प है जो एच _पि का है | इसके बगल में कुछ बिल्डिंगे बन रही है अभी लगता है की पूरा नहीं हुआ और एक मोबाइल टावर --

पिक्चर है जो एक पेट्रोल पम्प का है बगल में एक अ आ स्कार्पियो गाड़ी है।

और इस जो पेट्रोल पम्प है जो इंडियन ओइल का है।

मुझे इसमें एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है पारामाउंट कोचिंग ।

है जो एक मंदिर है जिसमें बहोत सारे श्रद्धालु लगता है मंदिर में जा रहे है और इस पर सुमेश्वर महादेव लिखा हुआ है।

इस पिक्चर है जो बहोत हरे-भरे मैदान है और बगल में एक बाउंड्री भी है और इसमें बहुत सारे भेड़िया है और एक भेड़ियो चराने वाला आदमी है।

जो डनटन लिए है और ब्लैक कलर का एक जैकेट